इस तलाब के किनारे अनेक सारे पत्थर भी हैं।

यहाँ पर एक बाइक एक टैम्पू है। एक मैजिक खड़ी है।

यहाँ पर एक बड़ा-सा घर है।

इ दुकान में अनेक सारे कपड़े हैं।

यहाँ पर एक बड़ा-सा घर भी है।

ये कार भारे में भी चलती --

इसके गोदी में एक आदमी बैठे हुए हैं।

यहाँ पर बहुत से ग्राहक आ कर समान खरदी --